टेबल के ऊपर प्याज रखा हुआ है उसके पीछे हमें अलमारी देखने को मिल रहा है।

दो हमें बड़े बड़े मशीन देखने को मिल रहे है उसके साइड में हमें--

इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देखने को मिल रहा है। एक दो दीवाल पे हमें--

बहोत बड़ा सा वायर लगा हुआ है वहीं पे मुझे पेड़ वेड देखने को मिल रहा है।

हमें यहां पे एक लड़का देखने को मिल रहा है जिसने लाल रंग ता--

बहोत सारे पत्थर देखने को मिल रहे हैं सामने में खुला ढलान देखने को मिल रहा है ऊपर में पहाड़ देखने को मिल--

यहां पे नीचे में फर्श देखने को मिल रहा है बहुत सारे--

पेड़ देखने को मिल रहा है। सामने में पिलर सब देखने को मिल रहा है।

हमे यहां पर एक रोड देखने को मिल रहा रोड से बगल हमे जंगला सा देखने को मिल रहा है उसके बगल में हमें --

साइकल देखने को मिल रहा है मुझे तार देखने को मिल रहा है

और अल हलता वाइट लाइट से पेंट किया गया है दीवाल में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड देखने को मिल रहा है।

हमें यहां पर नीचे में एक कैरेट देखने पर मिल रहा है इसके अंदर--

अल्वेस्टर लगा हुआ देखने को मिल रहा है सामने में फूल देखने को मिल रहा--

देखने का मिल रहा है ऊपर सामने--

कपड़ा पहना हुआ है सब आदमी यहां पर सामने में एक मंदिर देखने ।

यहां पर बाजार का फोटो देखने को मिल रहा है बाजार में हमें एक आदमी देखने को मिल रहा है आदमी ने व्हाइट रंग का--